आ एक लम यहाँ एक लम्बा हा सा हाल है। हाल पर एक टॉर्च जल रही है और बहोत सारे ए फुग्गा लग रहे हैं।

यहां पर आग जल रही है कुछ एक इंसान है और कुछ रेता टाइप की पड़ी हुई है।

और एक दुकान दिखाई दे रही है उस पर तीन इंसान दिखाई दे रहे हैं।

यहां यहां कुछ लोग योगा कर रहे हैं और पेड़ दिखाई दे रहे है बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ एक हॉल है हॉल में लाइट जल रही है और एक ब्लैक कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

नीचे बोट रखा हुआ है और--